गेरज दिख रहे हैं बहुत बड़ा गेरज लग रहा है पुरानी गाड़ी है जिसके मशीन्स खुले हुए नजर आ रहे हैं अ सामने कांच दिख रहा है नीचे छोटे-छोटे घास भी नजर आ रहे हैं।

कांच का दरवाज़ा है बाहर की तरफ एक बच्चा एक बुजुर्ग खड़े है जो वाइट शर्ट पेंट पहने हुए हाथ में मोबाइल --

भगवान जी के मूर्तियों की दुकाने लागायी है जिसमे लाइट ज्वला हुआ बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियां आ सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई है।

दृश्य आपको दिख रहा है जिसमें कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है बाँस की बनाई हुई है जैसे बेंच है टेबल है ।

बहुत ही सुंदर सा दृश्य है एक इतने बड़े पत्थर के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं ।

चारों तरफ हरियाली ही हरियाली जंगल है पहाड़ हैनदी हैएक झरना है आपको दिख रहा होगा एक नीचे आदमी खड़े हैं पत्थर के नीचे काला रंग का पत्थर है ।

इसमें पेड़ पौधे बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे हैं घास हे कुछ आ पत्ते फूल पे पौधे लगाए हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाए हुए हैं छोटा सा बेठने का जगा भी--

जगह बनाई हुई है बैठने के यह एक स्टेशन के जैसा लग रहा है बैठने का जगह पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं ।

बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिख रहा होगा यह एक फौजियों के कैंप जैसा लग रहा है यहां पर तोफ नजर आ रहा है कुछ सैनिक की मूर्तियां नजर आ रही है स्टेचू बनी हुई है ।

बहुत ही खूबसूरत सा नजर आपको दिख रहा होगा ठंड का मौसम लग रहा है ।